वो जो दूसरी वीडियो है उसमें भी जिम करने वाला एक आदमी खड़ा है।

ये लग रहा है मॉल है उपर लाइटें भी लगीं है और कुछ अजीब जैसा बना ब्राउन ब्राउन उसके उपर कुछ रखा है।

और कुछ घर के समान भी रखे हैं जो घर में प्रयोग किया जाते हैं और जो पढ़ाई के लिए प्रयोग कर जाते हैं।

और जिसपे सामान रखा जाता है ठेला जैसा वो भी है।